सामने दो स्कूटी भी लगा हुआ है।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

यहां अगल बगल बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ भी हैं।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

यहां पर शटर भी लगा हुआ है।

यह तस्वीर एक कमरे की है जिस कमरे का रंग पीला है।

ऊपर मे रेलिंग भी लगा हुआ है जो की लोहे का है।

मकान के ऊपर करकट भी लगा हुआ है इसका रंग नीला है।

अगल बगल पेड़ पौधे भी हैं।

अ सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग भी है जिसका रंग सफेद है।